एक यह अच्छा बात है जोकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बहुत तरह की सामाने खरीद रहे हैं और बहुत अच्छा है। इस जगह पे इस चीज़ की सेलिंग होती है।

जिम है जोकि बहुत बड़ी जिम दिख रही है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आकर जिम कर सकते हैं जिसकी आज लग रही है सेलिब्रेशन है जो लग रही है इस जगह पे |

बहुत सारे लोग आए हैं जो की अपने अपने पूजा करेंगे फेरे करेंगे बहुत अच्छे से यहाँ पर अपने --

पोखरा है जो की बहुत ही बड़ी है और इस जगह पे दूर से --